कोई भी हरी है और पेड़-पौधे भी इसमें लगे हुए है यहाँ पे बहुत सारे --

यहाँ एक बोहत ही सुंदर मकान बन रहा है इस मकान में बोहत सारे लोग काम कर रहे हैं।